सामने हरे हरे पेड़ भी दिख रहे हैं कुछ गमलों में है और कुछ पन्नी में लगे हुए हैं।

भारत पेट्रोलियम का जो बोर्ड है वो ब ब्लू एलो और वाइट कलर में है।

पीली और ऑरेंज कलर में बगल में नीचे पॉट रखा हुआ है जिसमें से रेड कलर के पत्ते और ग्रीन कलर के पत्ते भी दिख रहे हैं।

और नीले कलर का दरवाजा और ऊपर शीशा लगा हुआ है।

दो लोग खड़े हुए हैं एक बस के सामने कुछ सामान रखा हुआ है।

यह बिल्डिंग एक सदर अस्पताल गोपालगंज का है।

और वाइट कलर की मेज लगी हुई है जिस पे नैपकिन और पानी की बॉटल रखी हुई है।

यह किसी हवाई अड्डे के सामने का दृश्य है।

सामने धोती से बनाया हुआ टेंट जैसा लगा हुआ है जिसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है।

जिसपे नीले ला कलर की पट्टी लगी हुई है।

यह कोई एकेडमी है जिसका नाम बृंदास है।

दो स्पीकर रखे हुए हैं और दोनों साइड बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह पड़ी हुई है।

छात्रावास का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।

गेट पे वाइट छत के नीचे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है।

छोटे छोटे गुड्डे दिख रहे हैं और गुड़िया भी दिख रही हैं जिनका चेहरा ब्लर है।

सामने मेज पे दो ठो कंप्यूटर लगे हुए भी दिख रहे हैं।

यह अमूल की कोई डेयरी है जो बनास में स्थित है।

सामने एक खंबा लगा हुआ है जिसपे एल_ई_डी लाइट लगीं हुईं है।

यह कोई ऑफिस या घर हो सकता है जिसके बाहर गा बड़ा सा गार्डेन है जिसमे युकोलिप्टिस के दो पेड़ लगे हुए बड़े बड़े दिख रहे है और--

उसके बगल में ग्रीन ग्रीन कलर का एक राउंड गोला बना हुआ। उसके ऊपर पिंक कलर का एक गोला बना हुआ। उसके बाद रेड कलर का गोला बना हुआ है और सा उसके ऊपर हरे हरे और पिंक और रेड कलर के फूल भी दिख रहे हैं।

पौधों में से किसी किसी में फूल भी निकल आए हैं।

फर्श जो है वो ग्रीन और व्हाइट कॉलम में डिवाइड है।

सामने दो सोफे टाइप के भी दिख रहे हुए हैं जिसकी दीवारें ब्लू और येलो कलर में पेंट है।

कुछ किताबें पीली नीली काली लाल हैं।

छत में इंजीनियरिंग ई_सी_ई स्लैश डबल ट्रिपल ई का बोर्ड लगा हुआ है।

एक व्यक्ति क का सिर्फ हाथ दिख रहा है जो किताबें लेने आया है।

और उसके ऊपर का पोर्शन पीले कलर में बना हुआ है।

पीछे एक मरीजों को देखने के लिए बेड लगा हुआ है जिस पे व्हाइट चादर लगी हुई है।

जहां पर बेड लगा हुआ जिसपे व्हाइट मैट्ट्रेस बिछी हुई है और पीछे दो रेड कलर की पीलो रखी हुई हैं। उनके पीछे दो व्हाइट कलर की पीलो रखी हैं।

फर्श जो है वो ब्राउन कलर में है और बगल की दीवार अह येलो कलर में है।

इन लोगों की रनिंग करते हुए तस्वीर लगी हुई है और एक पंखा लगा हुआ है।

बैठने के लिए सफेद और ऑरेंज कलर की डेस्क बनी हुई है।

और गाड़ी के पीछे दो गाड़ियां और खड़ी है।

और सामने बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं जिन पे लोग बैठे हुए हैं।